बच्चा अपने पैर में लाल रंग का जूता पहना हुआ है।

एक खिड़की नजर आ रही है खिड़की में सादे रंग का पर्दा लगा हुआ है।

पानी का बाल्टी भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

चित्र में गेंदा का लरी सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक लाइटे भी जली हुई है।

पिलर के दोनों साइड बड़े बड़े गेट भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में बाबा धाम का मंदिर दिखाई दे रहा है।

और इस चित्र में एक बिजली का पोल भी गाड़ा दिखाई दे रहा है।

करकट में काफी सारे लोहे लगे दिख रहे हैं।